यह एक गांव है। गांव के अंदर ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड के अंदर सब जा रहे लड़के योगा कर रहे है। उधर एक कोक योगा का सर भी दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ बन रहा है जिसका काम काज अधूरा है। पर्वत दिखाई दे रहे हैं।

और आसमान दिखाई दे रहा है। पेड़ दिखाई दे रहे है।

दो झूले भी दिखाई दे रहे हैं एक खंबा दिखाई दे रहा है ओर दोनों बच्चे झूले झूल रहे हैं।

के ऊपर नेट के तार दिखाई दे रही है। एक दरवाजा रखा हुआ है। उसके पास में एक बोर्ड का नोटिफिकेशन रखा हुआ है।

यहाँ एक मंडप लगाया हुआ हैं। यह मंडप पिंक और व्हाइट कलर का हैं। इसके अंदर एक गार्डन भी --

आस-पास में कई सारी लकड़ियाँ दिखाई दे रही है बिजली के खंबे दिखाई दे रहे। बिजली के दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर जैसा लग रहा है। जहाँ बाहर कुनडीये पड़े हुए है। उसके अन्दर छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है।

दो मुरकी दिखाई दे रही हैं। वो साइड है। एक काली मुरकी है। एक सफ़ेद मुरकी हैं। कुछ नीचे सा पड़ा हुआ है।